बहोत बड़ा जे_सी_बी दिख रहा है कुछ लोग दिख रहे हैं।

बाजू में एक लाल बोलेरो दिखाई दे रही है। एक और बाजू में सफेद बोलेरो दिखाई दे रही है।

उसमें चार डी_जे नीचे रखे हुए हैं चार डी_जे ऊपर रखे हुए हैं उसमें कुछ ऊपर लाइटें लगी हुई हैं।

एक बहोत बड़ा शोरूम है उसमे कुछ महिलाएं खड़ी हुई है कुछ आदमी खड़े हुए है।

सामने कुछ समान रखा हुआ है कुछ ऊपर कपड़े टंगे हुए हैं एक आदमी बैठा है।